और इससे ऐसा लग रहा है की ये किसी पटाखे का दुकान है और इसके दीवार पे नो स्मोकिंग का पोस्टर भी है ।

कुछ सरक जैसा काला-काला लग रहा है और ये किसी वन का तस्वीर ऐसा लग रहा है।

इस तस्वीर में मुझे कई सारी कला कृतियां दिखाई दे रही है जो कि काफी रंग-बिरंगे और काफी भी खूबसूरत है।